यहा ऊची चोटी दिखाई दे रही है जिस पर की लोग --

गंगा नदी का जो की गोमुख से आती है।

बहुत ही शुद्ध ऑक्सीजन का यहाँ पे प्रवाह मिलता --

जिसमे की मेरा पसंदीदा काजू कतली भी आप देखा पा रहे हैं।

के वृक्ष दिखाई दे रहें हैं।

ट्रेवल यात्रा कर सकते हैं।

सभी फोटोग्राफियाँ आप देख पा रहे हैं।

जिस पर हम आध्यात्मिक --

घास और छोटे-छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें पत्थर बिछाए जा रहे हैं जिसके ऊपर फिर --

सुनहरे रंग की पट्टी की गई है।

हमारी दोस्ती का प्रतीक होता है।

यह समुद्र आप देख पा रहे हैं समुद्र का --

आरंभ हुआ है इसमें पीले --